एक बाहर गेट है जो गेट चालू है गेट के बाहर बड़ा पेड़ दिख रहा है गेट के बाहर गाडियाँ भी खड़ी है वहाँ पर एक आदमी गाड़ी पर बैठ कर अंदर जा रहा है।

यह एक ऑटो दिखाई दे रहा है ऑटो का कलर ब्लैक है ऑटो पर अतुल नाम लिखर है।

कछुवे का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है दे रहा है कछुवे के पासे एक कोई चीज़ पड़ी दिखाई दे रही हैं।

है यहाँ पर घर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों की गद्दी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहा है।